जंपिंग बीप दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर हम देख सकते है की लाल खुर्ची दिखाई दे रही है।

जैसे कि डमरू धोल और --

नदी के बिच में एक रास्ता नजर आ रहा है जो की दाईं ओर--

पेड़ नज़र आ रहे है कुछ दुरी पर आगे हम देख सकते--

जिसमें हम देख सकते है कि मछलियां रखी हुई दिखाई दे रही है।

सफेद पीला दिखाई दे रहा है और पीछे की दीवाल --

जिस ने केसरिया रंग की शॉल केसरिया रंग की धोती पेहनी हुई हैं।

रोड के ऊपर हम देख सकते है वेयर के खम्भे भी नजर आ रहे है।

की हुई दिख रही है और यहां पर हम देख सकते हैं कि --

यह एक लोहै की दुकान दिख रही है जहाँ पे हम देख सकते --

पर हम देख सकते है एक सफ़ेद रंग की गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

इसी में लिखा गया है और हम देख सकते है ज्यादातर लड़के --

यहां पर हम देख सकते हैं कि एक मंदिर दिखाई दे रहा है।

अंदर एक व्यक्ति बैठा हुआ भी हम लोग देख सकते हैं ।

यहां हम देख सकते हैं कि कुछ लोग भी खड़े हुए दिख --

और हम देख सकते है दीवाल का रंग सफ़ेद नज़र आ रहा है और एक किट नज़र आ रहा है।

हम देख सकते हैं कि नीला दिखाई दे रहा है नीचे आने --

हम देख सकते हैं कि पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं पीछे की तरफ।

कुछ खंभे दिखाई दे रहे है जो--

यहां हम देख सकते हैं कि बहुत दिखाई दे रही है।

की दूर पर बड़े -बड़े पहाड़ दिखाई दे रहे है।

ऊपर की तरफ हम देख सकते हैं प्लस आकार --

अंदर की तरफ हम देख सकते है कि लाइटिंग --

बिचाई हुई दिखाई दे रही है और महिला ने साड़ी पहनी हुई।

नीला दिखाई दे रहा है और उनमें पत्तों की --

और दो व्यक्ति भी नजर आ रहे हैं एक व्यक्ति नीलेश --

एक बच्चा जो कि बैठा हुआ नजर आ रहा है।

यहां पे हम देख सकते हैं कि एक बड़ी इमारत --

दिखाई दे रही है उस इमारत के ऊपर --

ऊपर की तरफ गेट के हम देख सकते हैं।

सफ़ेद कपड़ों में नज़र आ रहा है उसके ऊपर हम देख सकते है ।

में लिखा गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आसपास भी --

छोटा कूलर भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

सामने की तरफ ईंट का घर भी नजर --

अंदर हम देख सकते हैं एक फ्रिज दिखाई दे रहा है।

ने काला टी-शर्ट और मास्क पहना हुआ है पीछे कुछ --

इसने सफेद शर्ट पहना है और उसके गले में --

हैडफ़ोन दिखाई दे रहा है हम देख सकते है की वो--

चाय पीता हुआ नजर आ रहा है चाय का कबसा।

नीचे पड़ती हुई दिखाई दे रही है इस तरफ भी हम --

ऊपर हम देख सकते हैं कि खुला आसमान नजर आ रहा है।